एगो साइकिल खड़ा बिया फिर ओकर सामने दुगो मोटरसाइकिल खाड़ा बाड़न सन फिर एगो जनरेटर लउकत ह एगो मेहरारू बइठल बिया।

उमें बत्ती बरल बा दुनो में।

ओहिजा सलाद बाटे टेबल प रखल। पियर कपड़ा प लगाके घेरल बा। ओहि प पत्तल रखल बा। डस्ट्बिन रखल बा फेके खाती पत्तल। बहुत सारा आदमी बाड़न जोन खाना खत हवन।